कुछ महिलायें और बच्चे यहां पर बेठे हुए है की एक --

बांध है और यहां पर कुछ अधिकारी लोग खड़े हुए हे और--

अपना समय बिताने के लिये जाते हैं ।